और गुलाबी कलर की एक टोकरी रखी है ये अलमारी गुलाबी कलर से प्रिंट है ।

एक रेड कलर एक वाइट कलर है एक पिले कलर की है यहाँ पर कुछ पत्तियाँ दिख रहे है जो हरे कलर की हैं ।

एक बाइक खड़ी है जीकि ब्लैक कलर की है एक आदमी खड़ा है |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

यह एक ऑफिस है यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ खड़े हुए हैं |